आप अगल बगल बहोत सारे सामान रखा देख सकते हैं।

यहां पर एक स्टेशन देख सकते हैं।

यहां पर एक बगल में छोटा--

जहां पे छोटे-छोटे पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं आपको।

यह एक मशीन की दुकान हैं।

दृश्य है जहां पर बहोत पुजारी--